मैं देख पा रही हूं कि एक रोड है और यह रोड बहोत जाम में है।

अब जो बोर्ड है उसकी जो कलर है वो है नीले रंग में।

मैं देख पा रही हूँ की टाटा टिस्कोन की बोर्ड लगी हुई है इसकी जो रंग --

और मैं भी देख पा रही हूँ की यहां पे एक ट्रेक्टर है और ट्रेक्टर में बहुत सारी सामान लोड है।

यहां पे कुछ अह आदमी लोग हैं कुछ औरत भी हैं।

आ होटल के के खिड़की से सिनरी भी दिख दे रही है।

औल उसके पास एक बोतल भी है और टीशू पेपर भी रखाई हुई है और दो टेबल खाली है।

और उसमे भी बोतल रखी हुई है और टिसू पेपर रखी हुई है।

यहां पर दो तीन आदमी भी है जो की कपड़ा दिखा रहे हैं और कपला ले रहे हैं।

इसकी जो बोर्ड है वो नीले रंग की है और गेट काले रंग की है गेट खुली हुई है इसके अंदर--